बोहत बड़े-बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है निचे छोटे छोटे गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर पानी की बोतल दिखाई दे रही है यहाँ पर एक जो आदमी के कमर मे दिखाई दे रहा है।